दूर में एक ऑटो भी नजर आ रहा है।

तक दुकान है पुस्तक के दुकान पर बहोत सारे बॉक्स बने हुए हैं ।

यह एक कॉलेज का कार्यालय नजर आ रहा है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं यहां के फर्शों पर कुछ घास भी लगे--

यह ढाबा अल्बेस्टर का बना हुआ है।

यहां पर बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं।

बॉक्स के ऊपर में एक बोतल दिखाई दे रहा हैं उसके जस्ट बगल में एक बैग का नज़ारा भी नजर आ रहा --

यह एक बाजार का चित्र है इस बाजार में मछली बेची जाती दिखाई दे रही है।

और एक बच्चा दिखाई दे रहा है एक लेडिस अपने बच्चे के हाथ पकड़ के डाकघर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कमरे में टेबल और चेयर लगे हुए हैं।

यह सब्जी मंडी में बहोत ज्यादे भीड़ है।

कुछ समय बैग को टांगे हुए नज़र आ रहे हैं।

यह चित्र एक ऑफिस का नजर आ रहा है यहां पर बहुत सारे डॉक्टर और स्टाफ भी दिख रहे हैं।

यह एक साइकल का शॉप है यहां पे छोटे और बड़े साइकल भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक जय रेडियम पॉइंट है।

बीच में रास्ता भी दिखाई दे रहा है।

यहां मरकरी और पंखे भी लगे हुए हैं।